एक कार दिखाई दे रही है जो की जिस का फ्रंट टुटा फूटा दिखाई दे रहा है यहा पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं एक टायर दिखाई दे रहा है यह पर एक येल्लो और वाइट कलर का डस्टबिन रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक ईमारत है जिसके बाहर का गेट काफी सुंदर लग रहा है यहाँ पे ये एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है ईमारत के ऊपर एक लाइट लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

ये एक अ जगह है जहां पर बैलून से सजावट की हुई है ये जगह रेड कलर के है यहाँ पर उम्म एक गेट दिखाई दे रहा है गेट के सामने एक साइकिल और बाइक खड़ी हुए दिखाई दे रही है अंदर के साइड में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक रोड है। जहाँ पर एक ब्लू पिंक कलर का रिबन बना हुआ दिखाई दे रहा है। रिबिन के दूसरी साइड एक आदमी खड़ा हुआ जो फोन चला रहा --

ये एक जगह है जहा पर बहुत सारी बसइस खड़ी हुई हैं यहाँ पर एक छोटी-सी दुकान दिखाई दे रही है दुकान के बाहर एक वाइट कलर की चेयर पड़ी हुई दिखाई दे रही है दुकान के अंदर काफी सारा सामान रखा हुआ हैं ऍम कुछ टॉफ़ी के डब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहा पर एक आदमी--

यहाँ पर फूलो से सजावट की हुई हैं यहाँ पर बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।